यह किसी स्कूल की तस्वीर है जिसमें बहुत सारी टीचर्स बाहर निकले हैं कुछ टीचर बात कर रहें हैं और इसके जस्ट सामने तीन पेड़ हैं ।

की येलो कलर की है और दूसरी ट्रक उसके पीछे खड़ी है।

एक टीचर है जिन जो इन लोग को योगा सिखा रही है सब लोग अपने अपने मैट पे बैठे हुए हैं।

तस्वीर में एक बहोत बड़ी सी दुकान है जो की बुक कॉपियों की दुकान है।

इस तस्वीर में कुछ मजदूर हैं जो की काम अपना कर रहे हैं और एक आदमी व्हाइट कलर की शर्ट में --

एक बस स्टेशन की तस्वीर है जहाँ पे लोग अपने अपने बसों मे बैठ के अपने अपने घरो पे जाते है।

और बहोत बड़े-बड़े फैन हैं। जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और लोग --

और रेस्टोरेंट में लाइटे लगी हुई है बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है कुछ पेंटिंग्स लगाई गई है और दो-चार लोग बेठे हुए है।

इस तस्वीर में यह फूल की मंडी है जहाँ लोग फूलों को लाके बेचते हैं।

तस्वीर में स्टेशनरी की शॉप है ज --